आदमी ने एक सफेद रंग का टोपी पहना हुआ है।

इस छवि में चार कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कुर्सियों का रंग लाल है।

इस तस्वीर में एक काले रंग के बोर्ड में जे_सी_बी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस छवि में काफी सारे पुतले सफेद रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक खिड़की नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

इस तस्वीर में हमें कुर्सियां नजर आ रही है।

इस छवि में बड़ी बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

इस छवि में कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस छवि में काफी सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक पौधा भी दिखाई दे रहा है।

यह छवि एक मिठाई के दुकान की है।

इस छवि में एक ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें पीछे काफी सारे पेर नजर आ रहे हैं।

इस छवी में नीले रंग के बोर्ड में बैंक ऑफ महाराष्ट्रा लिखा हुआ है।

इस छवि में लाल रंग के बोर्ड मे पावर जीम लिखा हुआ है।

इस छवि में काफी सारे लीची फल दिखाई दे रहे हैं।

छवि में लीची फल सिल्वर रंग के प्लेट में रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में शेल्फ का रंग सफ़ेद है।

इस चित्र में एक बोर्ड में बाटा लिखा हुआ है।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

इस छवि में फर्श का रंग सफेद है।

इस छवि में काफी सारे लैंप पोस्ट दिखाई दे रहे हैं।

टेबल का रंग लाल है।

इस छवि में दीवार का रंग पीला है।

इस चित्र में एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।